फोटो में हमें नजर आ रहा है।

आ रहा है यहां पर--

सैलून है और यहां पर--

यहां पर सीलिंग हॉस्पिटल है इसके बाहर एक--

इस बोट में अंदर बहोत--

यहां पर बाहर एक शॉप है यहां पर--

पिक्चर में हमे नजर आ रहा है।

यहां पर बहोत सारे टॉयज रखे हुए हैं।

जैसे कि यहां पर एक कैफे हाउस है और--

और कुछ गाड़ियां भी--

जैसे कि यहां पर एक बहुत बड़े पहाड़ हैं एक गाड़ी--